सिलिंग्स लगी हुई दिखाई दे रही है उस सीलिंग में हमें काफी सारी फूल दिखाई दे रही है जो की प्लास्टिक के फूल दिखाई दे रहै है और यहाँ पर --

दो चेयर्स दिखाई दे रही है और इन चेयर्स पर दो व्यक्ति बैठे हुए है इनके सामने कुछ वॉल्व पड़ा हुआ है एक पानी की बॉटल और चाय की कप भी पड़ी हुई है और पीछे --

उसके पास तीन से चार व्यक्ति हमें खड़े हुए दिखाई दे रहै है और नीचे कुछ मिट्टियाँ दिखाई रेत दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमे काफी सारी आ पर थोड़ी सी टेले जैसी दिखाई दे रहै है जहां पर हमें काफी सारे--

यहाँ पर हमें एक अ स्टैंड जैसा दिखाई स्टैंड जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक ऑटो और एक ए रिक्शा खड़ा खड़े हुए दिखाई --

यहाँ पर हमें कपड़े की एक शॉप दिखाई दे रही है इस शॉप के अंदर हमें जलती हुई लाइट दिखाई दे रही है और कुछ हैगर दिखाई दे रहै है।

और यहाँ पर काफी सारे लोग है काफी सारे बॉयस है जिन्होंने एक ही कलर के ड्रेस पहन रखी है और यहाँ पर हमें एक --

और जलती हुई लाइट्स की रौशनी भी आ रही है और यहाँ पर हमें सीढ़ी भी दिखाई दे रही है लोहे की --

रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर बैठने के लिए यात्रियों के लिए काफी सारे बेचेस है।

जल रही है जिस की रोशनी स्टार्स के रूप में प्रकाशित हो रही है वहाँ पर हमें कुछ घर दिखाई दे रहै है और कुछ खम्भे भी दिखाई दे रहै है।

यहाँ पर हमे पर्वत टाइप्स का दिखाई दे रहा है जहाँ से हमे पानी दिखाई दे रहा है पानी के झरने आते दि पानी के झरने दिखाई दे रहे है।